गाड़ी ऊपर टगी हुई है नीचे सामान रखा हुआ है।

एक खेत है जिसमें फसल लगी हुई है कुछ खाली मैदान भी पड़ा हुआ है।

यह एक विद्यालय है जिसमें बच्चे रंगोली बना रहे हैं।

दो कुर्सियाँ रखी हुई हैं। मस्जिद के बाहर चप्पल रखी हुई हैं। मस्जिद में पंखे लग रहें हैं। एक फाटक लगा हुआ है।

लाइट लगी हुई है एक रे अरे रेड कलर की एक --

--अरे इसमें नारियल का पेड़ लगा हुआ है गार्डन में डिज़ाइन -डिज़ाइन की पेड़-पौधे लगे हुए केले के पेड़ में फूल आ रहा।

रेल में रेल नीले सफ़ेद कलर का डिब्बा है और जिस में का फाटक बंद है एक विंडो उसकी खुली हुई है।

हमम सामान की दुकान है जिस पर बाल्टा-बाल्टी रखे हुए हैं पास में एक केले का ठेला है। सामने बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।